एक बड़ी सी साइकिल हैं।

इलेक्ट्रिक वायर लग रहा हैं।

कुछ साफ करने वाला सामान है एक व्यक्ति देख रहा है एक बैनर एक औरत तस्वीरें--

कुछ चप्पल रखा हुआ है एक चप्पल उल्टा है एक साइकिल हैं।